जो-जो एक आदमी बाइक से जा रहू है और एक आदमी स्कूटी जा रहू है और एक आदमी टेम्पूऔ लेके जा रहो है यहाँ से और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिग है जा।

और दो आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे और एक सिक्युरिटी गार्ड लगारोये जामे से मल्ले और जे रोड देखिए कितनी बड़ी गई भई हैझाते और कुछ लिखो भयो है इंग्लिश में यहाँ पे समझ मे नहीं आरो ऐ और दो लोग दो फ़ोटो बने भये हैं ऊपर।